और पार्क में छोटी छोटी घास है।

उसने ग्रीन कलर की शर्ट डाली हुई है।

और काफी सारी जो है बजरी है।

जिसके बाहर कुछ जंगले लगे हुए हैं जिनपर ग्रीन कलर का पेंट हुआ है।

और जिसमें एक काफी लोग बैठे हुए हैं।

जो कि काफ़ी बड़ी शॉप है ये पठानकोट की शॉप है।

और काफी जो कि व्हाइट ड्रेस में खड़ी है।

काफी सारे लोग आए हुए हैं।

और एक रेड एंड व्हाइट कलर का जो है पिलर बना--

ये एक रेस्टोरेंट है जोकि काफी बड़ा रेस्टोरेंट है।

ये एक पानी वाली पाइप है दूब है।